मेन रोड जिसके आस पास कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है के आगे कुछ बिजली के खंबे है एक बड़ा सा भवन है जिसके सामने एक ध्वज लगा हुआ है।

एक प्राचीन मंदिर जो टूटा फूटा मंदिर है मंदिर के ऊपर एक त्रिशूल लगा हुआ है मंदिर के पीछे बड़ा पहाड़ है मंदिर में टूटा फूटा सीढ़ी बना हुआ है इसमें कुछ--

एक मंदिर है जिसमें अनेक प्रकार के विभिन घंटियाँ लगी हुई है मंदिर के ऊपर एक पंखा लगा हुआ मंदिर में एक बड़ा सा कॉलम लगा हुआ है नीचे में कुछ है।

बिजली का टावर लगा हुआ है बहुत लेकिन आगे में दो पेड़ लगे हुए है।

इस तस्वीर में हमें किसी चौक की तस्वीर दिखाई दे रही है जहाँ बहुत से कार दिखाई दे रहा है बहुत से लोग दिखाई दे रहे है यहाँ से हमनें पुन: पधारे का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है पीछे में पहाड़ दिखाई दे रहा है बिजली का तार दिखाई दे रहा है।